एक मंदिर बना हुआ है उसके सामने घर भी बना है।

और फ्लावर्स लगे हैं बहुत सारी लाइटे लगी है।

लेफ्ट साइड में टिन पड़ी है और लकड़ियां दिख रही हैं खंभा लगा हुआ है।

ए_सी लगी हुई है और लाइटें बहुत सारी जल रही है सफेद कलर की।

बढ़िया अच्छा सजाया हुआ है पेड़-पौधे और पौधे लगे हुए हैं गमले रखे हुए हैं।